मुझे यहाँ एक मोल दिख रहा है और बहुत सारी सामान दिख रहे हैं टेडी बीयर दिख रहे हैं। स्कूल कि मी टिफिन बॉक्स दिख रहे हैं। बहुत इंसान दिख रहे हैं।

मट्टी कलर है फिर यहाँं पे भी पेड़ है फिर यहाँं पे आसमान है फिर आसमान है फिर यहाँं पे भी गाछ है यहाँं पे भी गाछ है बहुत ही गाछ --

चेयर है। चेयर है यहाँ पे कांच है यहाँ पे सजा हुआ है बत्ती है यहाँ पे बत्ती यहाँ पे बत्ती यहाँ पे ब्लू कलर का नेट है यहाँ पे चॉकलेटी कलर का कुछ टुकडा यहाँ पे चॉकलेटी कलर का कपड़ा है।